किराना दुकान के अंदर में इसकी दीवार की कलर पर्पल है।

इस घर में एक खिड़की है जो की ब्लैक कलर का है।

इस दुकान की दीवार का कलर स्काई है।

ये कहीं बॉर्डर में वाइट कलर किया गया है।

स्टेज पर ढेर सारे लोग भी हैं।

यह एक रोड पर का दृश्य है इस रोड पर दो तीन रिक्शा लगाए हुए हैं।

आपके बगल में ही एक व्यक्ति खड़ा है।

व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और नीचे फूल पैंट पहना हुआ है।

ट्रक के नीचे में एक सिल्वर कलर का बाल्टी रखा हुआ है।

इस दुकान में एक टेबल भी रखा हुआ है।

और वहां पर एक पोल भी है।

व्यक्ति के पास एक साईकल है।

यह एक दुकान का दृश्य है इस दुकान में ढेर सारा अलमारी बनाया हुआ है।

वहीं पर एक बच्चा है।

ढेर सारा कपड़ा वहां भी लटका हुआ है।

मैदान में एक लड़का है जो की बाइक पर बैठा हुआ है।

वाशिंग मशीन के बगल में एक वाइपर भी रखा हुआ है।

यहां पर ढेर सारा लकड़ी भी गांजा हुआ है।

यहाँ पर लकड़ी पर ढेर सारा कपड़ा भी टांगा हुआ है और घोड़ा भी टांगा हुआ है।

दूसरे तरफ ढेर सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा मैदान का दृश्य है इसके चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है और बाउंड्री का कलर पीला है।

मैदान में एक बस भी लगा हुआ है।

उसमें ढेर सारा चीज रखा हुआ है।

इस दुकान में ढेर सारा आलमारी बना हुआ है।

बाउंड्री के बगल में ही एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

इसकी दीवार पर एक बल्ब लगाया हुआ है।

मैदान में ढेर सारे लोग भी हैं।

मैदान के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

यह एक रोड पर का दृश्य है रोड पर एक ट्रक लगा हुआ है।

घर में दो खिड़कियां भी हैं।

यह एक किताब घर का दृश्य है और किताब घर में दो लोग बैठे हुए हैं।

बाइक के ऊपर में बैलून लगाया हुआ है।